शादी का फंक्शन है। लाइट्स है। रेस्टोरेंट है। आदमी है। फ्लावर्स है। डेकोरेशन है। लड़ी है। लड़ी है।

ग्रोसरी शॉप है टावल है चेयर है कोलगेट है सेलो टेप है पैन है मार्कर है।

रोड है भीमराव अंबेडकर हैं।

मैदान है घास है त् बत्ता है गधा है पत्थर है बॉल है आँख है।

'' मंच है चेयर है फ्रेशर्स पार्टी चल रही है। ''

गार्डन है रोड़ है पौधा है पेड़ है।